इशके हाथ में फ़ोन है जो सामने पिक्चर क्लिक करता हुआ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की दिवार दिखाई दे रही है यहाँ पर एक अ पुल दिखाई दे रहा पुल के निचे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा हैं।

रोड है यहां पर एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है कार के सामने दो लोग खड़े हुए है ये एक हो-होटल है होटल में के बहार बहुत सारी चेयर पड़ी हुई है कुछ टेबल पडे हुई दिखाई दे रहे है एक बाइक खड़ी हुई है।

यहॉं पर एक बड़ा-सा समुन्दर दिखाई दे रहा है समुन्दर में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है पानी में कूड़ा पड़ा हुआ हैं।

यह पे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और उपर एक पुल दिखाई दे रह है जो ब्लैक कलर का है जो काफी गंदा हो रहा है।

जिसके उपर कुछलोग खड़े दिखाई दे रहे है उपर बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे है पत्तो वाले फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है पानी मे बहुत सर कुड़े पड़े हुएं है किनारे पे बड़ी बड़ी पेड़ दिखाई दे रहे है।